ये एक बहोत बड़ा जगह है जिसमें बहोत सारे टाइल्स और मार्बल रखे हुए हैं।

टोटो रिक्शा लगा हुआ है। एक अंदर में टोटो रिक्शा लगा हुआ है और एक ऑटो उस से बाहर निकल रही है।